अगाड़ी हम त एक बड़ी स्क्रीन कर छ दिखेण लगीं जै पर वेलकम टु छ लिख्युं एक कट छ बण्यु दिखेण से ये एक सिनेमा घर छ लगण लग्युं।

पैथर हम ते के एक बड़ी जगह छ दिखेण लगीं जै का ओर पोर जाली छ लगीं अर एंच छपर छ लग्युं फंडे बिटि एका हम ते एक बड़ु कूड़ु छ दिखेण लग्युं जाण बड़ी बड़ी खिड़की छन अर एंच वाला कमरा मा हम ते लैट छ दिखेण लगीं।

यखम हम ते एक बड़ी इमारत छा दिखेण लगीं जै का एंच एक नौ कर छ लिख्युं जू पर लाइट छ चमकणी।

इमारत पर फणी हम ते पहली मंजिल मा कुछ रेलिंग छ दिखेण लगीं एक बोर्ड छ दिखेण लग्युं जै पर कुछ लिख्युं भी छा इमारत कु रंग दिखेण से पिंगलु अर एंच बिटि लाल छ लगण लग्युं अ नीसाण ये पर ग्रिल्ल भी छ लगीं।

ये चित्र मा हम ते एक बाटू दिखेण लग्युं जै का बिचा मा एक बड़ु सफ़ेद गेट छा दिखेण से यु एक मंदिर कु गेट छ लगण लग्युं जैका अगाड़ी बाटा मा एक गोड़ छ।